यह डेल कंपनी के शोरूम नजर आ रहा है।

स्टील का पार्टिशन करने के लिए स्टैंड लगा हुआ हैं।

जमीन पे हरी हरी घास निकली हुई है।

और उसी तरफ एक घर भी दिख रहा है।

थाना के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है और बिजली का एक पोल है।

यहां स्टील का कुर्सी लगा हुआ है।

साइड की दीवाल के पास में दो फ्लावर पॉट रखा हुआ है जिसपे दो पौधे लगे--

जिसमें की थम्सअप माजा स्प्राइट पानी की बोतले इत्यादि छोटे बड़े साइज के बोतलों में रखी हुई हैं।

सामने की दीवार पे एक फैन है जो कि ऑन है।

रेलिंग के पास एक लाल रंग का झंडा लगा हुआ है।

दुकान के बाहर एक आदमी अकेले खड़ा होकर कुछ खा रहा है।

कुछ लोग रोड पे चले जा रहे हैं और कुछ लोग दुकान के पास खड़े होकर समान खरीद रहे हैं।

ये चित्र किसी बाइक सर्विसिंग सेंटर का नजर आ रहा है।